तय करने के लिए जाते हैं। टीररी में हमें काफी सारी फंक्शन्स मिल जाते है। टीररी हमारे बैटरी से चलती है। यह एक बिजली का उपकरण है।